ये आई_टी कॉलेज करके पूरा बोर्ड लगा हुआ है यहां पे कुछ फिगर भी बने हुए हैं।

और पेड़ पौधे हैं सफेद कलर से ये घेरा गया है वहां कुछ पौधे रखे हुए हैं गमले।

ब्लू कलर का आसमान दिख रहा है जिसमें व्हाइट कलर से बने हुए हैं आसमान में।

और यह एक एक बॉक्स है कुछ उस पे बैठी हुई है और बहुत सारी मछलियां ब्लू कलर के चट्टे पे रखी हुई--

ये बच्चे चेयर पे रेड कलर के चेयर पर बडे बैठे हुए हैं।

टीचर के पास भी रेड कलर का चेयर है और उस आगे एक टेबल रखा हुआ है वाइट कलर का --

हैं जिस पर उसने ऑरेंज कलर के शायद कुर्ता और ब्लैक कलर का उसमें हाफ कोट पहन रखा है ऊपर व्हाइट कलर का पूरा है।

ऊपर बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं कुछ लाइटे लगे है कैमरा भी दिख रहा है।

ये साइड में बास्केट रखा हुआ है जिसमें हम अपना सामान लोड कर सकते हैं।

बाहर ब्लू कलर से झरना वाला वो पोर्शन बनाया गया है जहां से झरना निकलता है।

ये यूनिवर्सल बुक सेलर्स करके ये बोर्ड लगा हुआ है यह कंपलीट बुक एंड स्टाबेरी मॉल ।

ये एक मंदिर पंडाल टाइप में बना हुआ है।

ऊपर कई सारी लाइटें लगी हुई हैं दूर सीढ़ियां दिख रही हैं जाने के लिए एक्सीलेटर है बगल में।

साइड में एक छोटा सा घर टाइप में भी बना हुआ वहां पर बहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं एक बड़ा सा पेड़ है।

बहोत सारे पौधे पिंक कलर के फूल है येलो कलर के फूल है साइड में गमला रखा हुआ है व्हाइट कलर का एक गत्ता से--

बगल में एक दो आदमी और है जो एक बना रहा है और बनैया शीशे लगे हुए हैं।

यहां पे भगवान के लिए भगवान की मूर्तियां मतलब फोटोज टंगे हुए हैं।

तीन ढोलक रखे हुए हैं एक हारमोनिया रखा है बजाने का एक टेबल है छोटा सा--

ये एक मंदिर है ये नीम करोली बाबा लखनऊ का मंदिर है।

गजल कूल कॉर्नर करके ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहां पे बहुत सारे लोग हैं।

सेवेंटी परसेंटे ऑफ चल रहा है इसका बाहर बहोत सारी बाइक खड़ी है।

अ मिट्टी रखी हुई है मिट्टी मिट्टी के ऊपर ये ब्लैक कलर से ये पौधों को घेरा गया है।

साइड में कुछ रखा हुआ है ये वाइट कलर से ये पूरा बना हुआ है ये इसमें बीच में घेरा दिया गया है।

ये एक खेत टाइप में हैं यहां पे दो पेड़ खड़े हैं।

ब्लू कलर का आसमान पूरा दिख रहा है सीढ़ियां बनी हुई हैं साइड - साइड में लोग बैठे हुए हैं। --

और यहां पे शिशा एक लगा हुआ है पिंक कलर का एक बास्केट है।

रेड कलर का नीचे में अ मेट बिछाया गया है रेड कलर का साइड में पर्दा और आगे रेड और व्हाइट मिक्स पर्दा भी लगा --

और बीच में कुछ लोग और बैठे हुए हैं।

एक करी लीफ करके कोई एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पे साउथ इंडियन किचन है ये।

यहां पेड़ है साइड में ये साइड में कुछ जाले जैसा जंगले जैसा लगाया हुआ है जिससे पेड़ को ढका रहे।